यहाँ पे न्यू घर बन रहा है जिसका पिलर खड़ा किया जा रहा है।

चबूतरा बड़ा बना हुआ है जहाँ पर घास उगाई गई है घास हुई है और पानी जैसा यहाँ पे लग रहा है जैसे बारिश हुई हो नमी बनी हुई है जमीन में--

गमलों में छोटे बड़े पौधे रखे हुए हैं बगल में यहाँ बौंड्रेशन है।

सामने यहाँ पे बना हुआ है चिड़ी रखी हुई है।

और बगल में यहाँ पे नेट की जाल लगी हुई है जो गोल वाली जाल होती है वो लगी हुई है।

और यहाँ पे क्रिकेट के तीन डंडे भी बताए गए हैं जहाँ पे आउट किया जाता है।

और ऊपर यहाँ पे डिब्बे में पैक हैं लड़कियों वाले कपड़े जो लड़कियाँ यूज करती हैं जेंस वाले भी--

और दोनों साइड यहाँ पे सेलिंग लगी हुई रेलिंग लगी हुई है सीढ़ियों की रेलिंग लगी हुई लोहे की रेलिंग यहाँ पे लगी हुई है ऊपर से यहाँ टीन से--

फुल टीशर्ट है और बगल में यहाँ पे काउंटर जैसा बना हुआ है।

की तरफ पानी जा रहा है ऊपर से आ रहा है वाइट कलर का पानी यहाँ पे दिख रहा है।

यहाँ पे काफी लोग खड़े हुए हैं जेंस हैं महिला हैं और एक गुम्मच आकार का यहाँ पे मंदिर जैसा बनाया गया है।

यहाँ पे सारे महिलाएं रंग बिरंगी कपड़े साड़ियाँ पहनी हुई हैं।

और काफी खिलौने हैं जो रखे हुए हैं अंदर जाली के।

यहाँ पैलेस है जोकि ये पैलेस का गेट लग रहा है यहाँ पे काफी बहुत अच्छी गेट में जो होती है सजावट वो की गई है।

बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे काफी सारे वाहन हैं जो कार है दो पहिया है यहाँ पे ।

फूल लगाए गए हैं जो फूल हैं रंग बिरंगे यहां पे लगाए गए हैं काफी यहां पे पर्दे भी कलरदार लगाए गए हैं ।

अच्छी सजावट है सामने यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी में कुर्सी रखी हुई काउंटर है यहाँ पे ड्रम रखा हुआ है काफी सामान है जो रखा हुआ है।

यहाँ पे दुकानें हैं जो दुकान अभी बंद हुई हैं मतलब बंद हैं और दूसरी साइड रोड है रोड से वाहन आ जा रहे हैं।

ये और आगे एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है जो फोर व्हीलर में एक पैर रखा हुआ है।

काँच के अंदर रखी हुई हैं यहाँ पे काँच के बाहर दिख रही हैं और बगल में भी एक दुकान है।

और भी काफी सामान है इलेक्ट्रिक का जो रखा हुआ है और भी आगे एक दुकान है किराना की दुकान लग रही है जहाँ पे काफी सारा सामान रखा हुआ है।

यहाँ पे पैलेस है ये पैलेस लग रही है जहाँ पे काफी लोग दिख रहे हैं और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है।

अम्म कुछ एक बना हुआ है जहाँ कुर्सी टेबल रखी हुई हैं एक लड़की वहाँ पे है और भी काफी लोग हैं।

इसके अंदर काफी रखे हुए हैं बट क्लीयर नहीं है यहाँ पे एक आदमी कुर्सी रख के बैठा हुआ है।

यहाँ कोई फैक्ट्री लग रही है जहाँ पे काफी मशीनें अंदर फिट हैं इसके अंदर बाहर से काँच लगा हुआ है।

यहाँ पे दो लड़कियाँ कैंडल लिए हाथ में खड़ी हुई हैं और पीछे यहाँ पे काफी लोग खड़े हुए हैं।

यहां पे एक महात्मा जी के ऊपर चादर जैसे एक लगा के काफी लोग उसको पकड़े हुए हैं।

ये टायर रखे हुए हैं गाड़ी दो पहिया चार पहिया के टायर यहां पे रखे हुए हैं।

और सामने यहां पे बहुत बड़ा तख्त रखा हुआ है जहां पे चारों साइड कुर्सियां रखी हुई है।

यहां पे बकरी का बच्चा बैठा हुआ है और उसके हाथ पैर बहुत लंबे दिख रहे हैं जो कि--

ने हाथ पहले अपने फैलाए है और समेटे बैठा हुआ है उसके वाइट कलर का वाइट और काला कलर का है।

यहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर है मंदिर का गेट है गेट के सामने यहां पे।

यहां पे बहुत लोग हैं भीड़-भाड़ भी बहुत है य पैलेट्स ने बहुत अच्छी सजावट भी की गई है।

यहां पे ऑफिस बना हुआ है जहां पे बीवो लिखा हुआ है या कोई मोबाइल की कंपनी है।

यहां पे एक शॉप है इस शॉप में लैपटॉप रखा हुआ है कंप्यूटर लगा हुआ है।

सामने भी एक आदमी दिख रहा है जो कुछ सामान दे रहा है बाकी पूरा सामान यहां डिब्बू में पैक है रखा हुआ है।

सामने पानी भरा हुआ है यहां बगल में बड़ी-बड़ी घास लगी हुई है पेड़ भी है दूर यहां पे घर भी दिख रहे हैं।

ये कपड़े की शॉप है यहां पे जी लड़कियों वाले ड्रेस--

ये कोई क्रीम है या कोई फेस वाश है जिसके डिब्बे के अंदर पैक है इसमें गोल्ड प्लस लिखा हुआ है ये कोई क्रीम है या फेस वाश --

कुर्थी चुंडी लेगी वगैरह यहां पे है क्योंकि? काफी सारे यहां पे पुतलों को पहनाया गया है चुंडी उड़ाई गई है लेगी पहनाई गई है कुर्ती पहनाई गई--

और सामने भी काफी सारे पैकेट यहां पे बने रखे हुए हैं पनियों में पैक करके रखे हुए हैं कपड़े सामने--